और उसके बगल मै एक पेड़ भी है।

और अनार है। मौसम्बी का रंग हरा है।

एक अंदर नीचे को दुकान है और एक ऊपर को।

यहाँ पर एक आदमी फोटोग्रॉफी कर रहा है।

यहां पर शादी की सजावट की गई है।

यहाँ पर एक स्कूल के सेमिनार हो रहा है।

यह एक इ-रिक्सा है।

और ई रिक्शा हरा कलर का । उसकी टीन शेड पीली है।

गड्डे के अंदर पानी आ रहा है।

दरगाह हरे रंग की है और लोग दरगाह में जा रहे हैं।

बैठने वाली काले कलर की कुर्सियां हैं।